और लगता है इसका ओपनिंग आजकल में ही हुआ है क्युकी यहाँ ढ़ेर सारे बैलून लगाए हुए हैं।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

ये इमेज में मुझे बहुत ही बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है और इसके बगल में पेड़ सब लगाए हुए हैं जहाँ की पेड़ का कलर कुछ हरा-हरा दिखाई दे रहा है।

ये इमेज मुझे देखने से लग रहा है कि कोई बड़ा सा दीवाल बनाया गया है जिसका की रंग कुछ लाल हरा काला पीला कर के है।

और उजरा हरा लाल रंग से मस्जिद बनाया गया है और जिसमें तीन-चार बड़े-बड़े स्लतब गए हुई है जोकि देखने से ऐसा प्रतीत होता है की बहुत ही सुन्दर है।

ये इमेज में मुझे दिखाई दे रहा है एक मूत्रालय का बोर्ड और एक लाल स्क्रर्फ़ बहुत ही बड़ा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बोर्ड दो तीन दिखाई दे रहा है और ये पूरा बिल्डिंग लाल और उजरा रंग का है।

--और इसके आगे में तीन चार बड़े-बड़े स्तम्भ लगाए हुए हैं। जो की देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे --

देखने से मुझे ऐसा लग रहा है की ये भी कोई स्विमिंग पूल का ही फोटो है और यहाँ पे कुछ स्टंट करने के लिए वीडियो कोई बना रहा है और स्टंट कर भी रहा है।